यहाँ पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है यह सामने एक बड़ा-सा तालाब है तालाब में लोहे की ग्रिल लगी हुई है और सामने में--

यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यह एक विशाल तालाब दिखाई दे रहा है।

अलवारी में रखे हुए हैं और पास ही एक टेबल रखी हुई है पीले कलर का जिसमें--

पास एक आदमी बैठा है और थोड़ा-सा दूरी पर रंग-बिरंगी कुर्सियाँ लगी हुई है लाल नीले कलर की और कम्भल सफेद कलर का पुता हुआ है।

यहाँ पर बड़े-बड़े चित्र लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है डांस स्टूडियो यहाँ पर लोग डांस सीखने के लिए आते हैं।

चलकर बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर रंग-बिरंगी पे रंग-बिरंगी पेंटिंग की गई है दीवारों पर।

उसके पास में एक टेबल रखी हुई जिस पर बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई है सफेद कलर की।

सफेद और नीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं उसके किनारे-किनारे पे बहुत सारे हरे-हरे पेड़-पौधे लगे कुछ बड़े कुछ छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है यह बड़ी-सी बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है वह होटल सम्राट इंटरनेशनल की बिल्डिंग दिख रही है।

यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये चर्च एम् का नजारा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है ये किसी फल की बहुत बड़ी दुकान का नजारा दिखाई दे रहा है।

एक सामने से लाल कलर की टी-शर्ट पहने हुए आ रहा है यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं।

लाल कलर के खम्भे सजाए गए हैं और इसमें छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे मेहराब कटिंगदार सुंदर-सुंदर द्वार बने हुए खिड़कियाँ बनी हुई है।

जहाँ पर भुट्टे रखे हुए हैं कुछ छिले हुए हैं कुछ बिना छिले रखे हुए हैं हरे पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं भुट्टा--

करी हुई है और मस्जिद के ऊपर हरे कलर का गुंबज बना हुआ है।

और चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है पास ही दो लड़के खड़े होकर बात कर रहे हैं और मस्जिद के सामने एक हैंड-पंप लगा हुआ है और आस-पास फिर पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

नजारा है जो कि बहुत ही बड़ा जहाँ पर आईना लगा हुआ है जहाँ पर लोग डांस करते हुए अपने आप को देखते हैं और--

जो काले कलर की टी-शर्ट और नीले कलर की पैंट पहने हुए हाथ में लाल कलर का गिटार पकड़े हुए बैठा हुआ है और आगे और भी लोग बैठे हुए हैं।

कुछ काँच के गमले हैं कुछ चीनी मिट्टी के और कुछ मिट्टी के गमले रंग-बिरंगे रखे हुए हैं कुछ तुलसी के गमले भी रखे हुए हैं।

और तीसरे स्टेचू में सफेद कलर की शेरवानी पहनी हुई है।

जो कि कुछ बातें सुन रहे हैं और सामने एक आदमी उन्हें कुछ बता रहा है यहाँ पर सभी लोग कुछ ध्यान लगाकर सुन रहे हैं।

म--गार्डन का नजारा दिखाई दे रहा है पार्क का नजारा है ये जिसमें एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है।

यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये किसी किसी बहुत बड़ी--

ऊपर टॉप पहने हुए हैं और नीचे ब्लैक कलर की जींस पहने हुए हैं और सामने उनका टीचर उनको कुछ सिखाते हुए दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर की हाथ किए हुए हैं ऊपर की ओर।

लोग फिसल रहे हैं कुछ बच्चियाँ फिसल पट्टी से गोल-गोल फिसल पट्टी से अंदर से हो के आके बाहर बैठी हुई--